अम्म ओपन जिम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पास कोई पार्क हो वहाँ पर कुछ पार्क में बहुत सारी गर्ल्स भी बैठे हुए दिखाई दे बॉय्ज़ भी बैठे हुए दिखाई दे रहे है वहाँ वृक्ष भी मुझे कुछ मुझे काले-काले वृक्ष में भी कई प्रकार का पेड़ दिखाई बिल्कुल हरे-भरे भी दिख रहे है बिल्डिंग भी मुझको व्हाइट कलर --